यहाँ एक बोहत बड़ा पानी का चबूतरा ऊपर ऊपर उठता व दिखाई दे रहा। पानी--

और यहाँ बहुत सी मशीने रखी हैं नीचे कुछ चादर लाल कलर की बिछी हुई दिखाई--

एक अ हॉल दिख रहा है यहाँ बोहत से व्यक्ति और कर्मचारी खड़े हुए दिखाई दे रहे है।

यहाँ एक नीचे बोहोत से व्यक्ति मछली बेचते हुए नजर आ रहे है और कुछ खरीद रहे है और कुछ व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रही है और कुछ पीछे में पानी के ड्रम आधे-आधे कटे हुए रखे दिखाई दे रहे --

-- में एक बोहत बड़ा मंदिर दिखाई दे रहा है उस के बाहर में कुछ व्यक्ति आइड साइड में और सामने में खड़े हुए हैं और कुछ चेयर में बैठे हुए नज़र आ रहे है।

मंदिर में सामने दो लाइट हरे सफेद कलर के जलते दिखाई दे रहे है और आसमान काला दिख रहा है यह रात का समय है।

समाने एक पीली बिल्डिंग दीख रही हैं जिसमे भारतीय डाक घर लिखा हैं दिख रहा हैंओर और कुछ मोटरसाइकिलो मे व्यक्ति आते-जाते नज़र आ रहैं हैं।

रोड में से दो ऑटो दिखाई दे रही हैं जो खडी हैं। और ए कुछ व्यक्ति वहाँ ऑटो में बैठे हुए दिख --

यह एक ग्राउंड है जहाँ कुछ पौधे लगे हुए दिखाई दे रहे जहाँ एक व्यक्ति एक वृक्ष के पेड़ में कुछ मिट्टी डालते हुए नजर आ रहा है जो पीली मिट्टी या खादू डालते हुए दिखाई दे रहा हैं।